दूसरी तरफ लाइटें भी जली हुई हैं।

लाइटें भी नजर आ रही है।

एक शॉपिंग मॉल दिख दिखाई दे रहा है।

और वो खुद ही जहाज को चला रहे हैं और पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पास दुकानें भी लगी हुई हैं।

ऊपर कुछ कपड़े भी लटक रहे--

वहां पे छत पे कुछ नजर आ रहा है।